यह स्कूल में टेंथ तक की पढ़ाई इस स्कूल में होती है। यह स्कूल के बाहर मैदान में काफी सारे झाड़ियाँ --

यहाँ पे पंडित जी पूजा कर रहे है बहोत सारे बैलून् से सजाये गए है।

आते है यहाँ पे ईसाई धर्म के लोग चर्च में आते है प्रार्थना करते है यहाँ पे बहुत सारे चर्च में ईसाई धर्म के लोग --

बहोत सारे ताजे-ताजे टमाटर हैं यह टमाटर लाल कलर लाल रंग के हैं भिन्डी हैं हरी मिर्ची हैं प्याज हैं।

बैंक में भीड़ लगी रहती है बैंक के बाहर बहुत सारे गाडी खड़ी है बैंक में लोग पैसे निकलने के लिए --

यहाँ पे मिलते है बहुत सारे लोग यहाँ पे सामान खरीदने के लिए इस मेघा मार्ट में आते है काफी सारे भीड़ यहाँ पे रहती है यहाँ पे अच्छी रेट पे सामान मिलते है बहुत सारे आदमी खरीदने आये है।

बस स्टॉप में बहुत सारी बस गाड़ी खड़ी हैं सभी लोग यहाँ पे बस में चढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं यहाँ पे बहुत सारे बसों की भीड़ --

इस्पोर्ट स्टाइल कपड़ा मिला जो मिलता है अच्छी --

ये रेलवे स्टेशन में यात्री जाने आने के लिए बैठे है कुछ आदमी आ रहे है ट्रेन का वेट कर --